तो यहाँ पर कुर्ती स्टॉप किड्स वेयर्स और हर तरह की क्लॉथिंग मिलती है।

कोई भी फेस्टिव वगैरह हो तो यहाँ पर सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते हैं।

लोग यहाँ पर स काम के लिए आते हैं।

तरह-तरह की पूजा करने के लिए आते हैं बड़े बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं और यहाँ पे --

एक बाबा अपना ज्ञान दे रहा है।

उसे यहां पर बिठाया गया है उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करके उसको बिठा दिया गया है और लोग यहां पर उसकी ज्ञान सुनने के लिए--

पानी का बॉटल भी अवेलेबल है तो सभी स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है।

इस चर्च में और --

एरिया में नज़र आ रहा है मेन रोड में तो ट्रेवलर्स आकर खाते हैं बाहर कोल ड्रिंकस और --

ये मोबाइल शॉप है यहाँ पर हम मोबाइल खरीद सकते हैं यहाँ पर --

सिम कार्ड भी ले सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं।

और इस फॉर्म से मुरई को --

अंम खशाई लेते हैं और इसको--

इस एलिफेंट की पूजा कर रहे हैं तो --

यहां पर सर्जरीज वगैरह भी होती है ट्वेंटी फोर अवर्स है।

इ सब बहुत कम होता है और सर्जरी भी बहुत कम--

यहां पर जो है लोग काम करके अपना घर चलते हैं और--

बहुत ज्यादा नज़र आ रहा है और ये जो है थोड़ा लेक भी है।

शादी या फिर कोई भी जो इवेंट होती है तो उसको यहाँ पर लाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं।

इसके पार्ट्स अलग-अलग करके इसको रेडी किया जाता है नया तौर से।

और वॉटर सर्विस करके गाड़ी को नया भी कर दिया जाता है जी हाँ --

लेकिन रेड कलर रोज बहोत ही ज्यादा खूबसूरत होता है।

नजर आ रहे हैं यहां पर एक अं एका एक से पानी बहोत ज्यादा बहने लगता है।

और तो इन लोगों की ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे से होती है।

यहां पर कई सारे लड़कियां जमा हो गए हैं।

तो यही सिलेंडर था जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया था।